साइज सोफा भीरखा हुआ नजर आ रहा हैं।

और ऊपर हमें एक पंखा और एक फ्रिज भी नजर आ रहा हैं।

जहाँ पे हमें बहुत सारे बोर्ड नजर--

पियूष किराना स्टोर का एक बोर्ड हैं।

डिब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

एक लड़के को बैठे हुए देख सकते हैं ।

पत्ती से नकाशी की गई बहुत सारी--

हमें छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर--

मेले के रोड की तस्वीर हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं।

पारदर्शित रूप से फैली हुई हैं ।

पिक्चर में हम एक छट पूजा के घाट को देख रहे हैं जहाँ पे छठी मैया के छोटे-छोटे बहुत सारी मूर्तियाँ--

यहाँ पे लोग अपने-अपने प्रसाद फल टोकरी और ईख को सजा के यहाँ पे लोग पूजा करने बैठे हुए हैं।

लोग भी देख रहे हैं जो कि इधर-उधर घूम रहे हैं कुछ पेड़ और कुछ लाइटें --

मेल और एक फीमेल करेक्टर को--

मेल करैक्टर हैं उन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ हैं।

वाइट और ऑरेंज कलर से कपड़े से डेकोरेट किया गया है और कुछ फूल भी लगाए गए हैं।

इधर-उधर घूम रहे है व खेल रहे है।

किसी मंदिर की जाती हुई एक गलियाँ देख रहे हैं।

ट्यूबलाइट ओ से सजाया गया हैं यहाँ पे लोग अपनी-अपनी चीजों को भी बेच रहे हैं जिसमें हमें--

हमें घर जिसके बाहर एक पोस्ट ऑफिस का--

पोस्ट ऑफिस है उसके गेट पे हमें एक जाली का गेट नजर आ रहा है।

इस इमेज में हम एक कार सर्विस का सर्विस सेंटर देख सकते हैं।

कलर की हैं उसको पहना हुआ हैं।

इस स्कूल के बाहर हम एक खाली मैदान भी देख सकते हैं जहां पे हमें--

और कुछ-कुछ जगह जो हैं वो मिट्टी हैं।

बहुत सारे लंबे-छोटे घास नजर आ रही हैं।

यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग-अलग पेड़ भी नजर आ रहे हैं जिस पर रेड कलर के फूल है।

का रूम देख रहे हैं जहाँ पे हमें दो एक्सीलेटर मशीन दिख रही हैं।

प्रोडक्ट्स भी रखे हुए नजर आ रहे हैं ।

यहाँ गेट के दोनों साइड शुभ और लाभ और सत्य का चिन्ह लगाया गया हैं।

बाइक चालक जो कि फोन पे बात कर रहा हैं।

ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रही हैं जो कि येल्लो और ब्लैक कलर की है।

उसके जस्ट साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड में--

इस वाटर पार्क का मेन गेट है जहाँ से लोग अंदर और बाहर जाते हैं।

इस इमेज में हम एक मॉल का सीन देख रहे हैं ।

मॉल के अंदर इधर-उधर चीजें खरीद या फिर--

वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हैं।

के आजू-बाजू हमें बहुत सारे टेबल और चेयर्स नजर आ रहे हैं जिन पे लोग--

जहाँ पे हमें एक लड़का बाल कटाता हुआ नजर आ रहा हैं जिसने अपने बालों पे एक क्लिप लगाई हुई हैं।

यहाँ हमें एक फायर एक्सटेंशन का एक सिलेंडर भी नजर आ रहा है।

यहाँ फ्लोर पे भी ब्लैक मार्बल लगाया गया है।

के बेड रखे हुए नजर आ रहे हैं ।

जिनपे वाइट और ब्लैक कलर के मैट्रेस भी हैं जो कि अभी पूरी तरह से पन्नी में पैक हैं और कुछ --

इस योगा सेंटर में हमें सामने की तरफ दीवाल पे ओम का चिन्ह नजर आ रहा हैं ।

यहाँ पे हम दो लोगों को इस दुकान से खरीदारी करते हुए देख सकते हैं जिन्होंने लूंगी और शर्ट पहनी हुई हैं।

इस आँगन में हमें एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

जहाँ पे हमें लोग इधर-उधर घूमते--

झूलों पे झूलते हुए नजर आ रहे हैं ।

बहुत सारे छोटो बच्चों के लिए स्लाइडर और मिकी माउस भी --

यहाँ एक आदमी हमें ब्लैक कपड़ों में यहाँ पार्क में लेटा हुआ दिख रहा हैं।

इस इमेज में हम किसी ऑफिस का --

बीच में रॉड से कुछ बने पिरामिड --

यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में झूले पर बैठी दो लड़कियों को भी देख सकते हैं जिसने लेल--

किसी प्रोग्राम का एक सीन देख रहे है।

जहाँ पर हमें स्टेज पर बहुत सारे लोग खड़े हुए--

जो रूम हैं उसमें कई तरह की लाइटें भी जल रही हैं।

बैंक बोर्ड देख रहे हैं जो कि येल्लो और पर्पल कलर का हैं ।

यहाँ उसके नीचे हम चार ए_सी भी लगे देख सकते हैं ।

बगल वाली दीवाल पे हमें एक बल्ब नजर आ रहा है।

इस इमेज में हम एक पार्क देख रहे हैं।

झाड़ियाँ जो कि डिजाइन दार से काटी गई हैं ।

बहुत ही अच्छी तरीके से काट के गोल और--

मयूरा डिपार्टमेंटल --

स्टोर का एक बोर्ड देख रहे हैं जहाँ पे हमें--

ऊपर की साइड माइंड और बॉडी योगा का भी--

उसके थर्ड फ्लोर पे हमें एक जिम नजर आ रहा है।

इस बिल्डिंग के आइट साइड हमें और भी कुछ घर जो कि--

चार पाँच मंजिला एक इमारत नजर आ रही हैं ।

टेबल और कुर्सियाँ इधर-उधर रखे हुए नजर आ रहे हैं ।

स्विमिंग पूल के चारों साइड कुछ बाउंड्री भी नजर आ रही हैं ।

बॉयज हॉस्टल का बोर्ड देख रहे है।

उसके बगल में हम डॉक्टर एस के सिन्ने का भी एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पे--

अकैडमी ऑफ़ केमिस्ट्री लिखा गया हैं ।

रेडीमेड्स गारमेंट बिकते हुए देख रहे हैं ।

यहाँ पे हमें कुछ बॉयज और गर्ल्स डांस करते हुए दिख रही हैं।

इस इमेज में हम एक इंडियन ऑयल का बोर्ड देख रहे हैं।

यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी और एक ऑटो रिक्शा को भी देख सकते हैं।

इस इमेज में हमें कुएँ में--

पिंजरों से घेरा हुआ देख सकते हैं बाहर हमें बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

जिनके ऊपर हार चढ़ाया गया हैं।

यहाँ पे हमें दो हथोड़े और कुछ और भी--

यहाँ पे हम तीन चेयर देख सकते हैं और ऊपर के साइड हमें डिस्को लाइट्स जैसी गोल-गोल--